जिसमें बहुत सारी लाइटा लगी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा कछुआ है।

और साइड में एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ है।

साइड में एक लकड़ी का कुंडी भी है।

यह एक विशाखा डेयरी है।

और इसमें बहुत सारे पेड़ भी है।

साइड में लोहे की ग्रिल भी है।

और एक लोहे का गेट भी है।

और एक टेबल भी है और कुछ दवाइयां भी धरी हुई हैं।

बाहर कुछ बाइक भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत बड़ी दुकान है।

बहुत सारे बैटरे भी धरे हुए हैं।

यह एक स्थान है और यहां पर माता जी का जागरण हो रहा है।

और बहुत सारी लाइटा भी लगी हुई है।

और यहां पर भीम भरे जा रहे हैं।

एक आदमी के हाथ में फावला भी है और पीछे बहुत सारे मिट्टी भी है।

यह एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है।

और लोहे के कुछ पाइप खड़े हुए हैं।

और कुछ मरीज के लिए बेड भी है।

और बाहर बहुत सारे बच्चे भी हैं।

यह एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है।

जीसमें बहुत सारे कार खड़ी हुई है।

और फिर यहां पर तीन आदमी है।

और एक पानी की बोतल भी धरी हुई है।

खिड़की भी है जीस पर लोहकी ग्रील लगी है।

कुछ लाइना भी जा रखी है।

आउर साइड में कुछ बच्चों के खिलौने भी धरे हुए।

उस साइड में एक कांच की टेबल भी है जिस पर एक एरोप्लेन धरा हुआ है।

कुछ फूल भी है और लाल कलर और नीले कलर के भी हैं।

यह एक कॉफी शो की दुकान है।

उस साइड में एक खंभा भी है।

प्लास्टिक की कंडी भी है।

यह एक जगह है और यहां पर कुछ कार खड़ी हुई है।

और एक लोहे का जीना भी है।